आसमान जो है वो नीला हे लाइट का खम्बा भी है और लाइट के वायर भी जा रहे है और बाइक भी है यहाँ पर।

बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है अच्छी बिल्डिंग है सफेद रंग की और यहां पर एक आदमी रिक्शा लेकर आ रहे हैं वो आदमी औरत बैग लेकर जा रहे हैं और यहां पर जो है बाजार है और उस --

और यहां पर जो है कई सारे साक रखे हुए हैं सफेद रंग के हैं और इन्हे उठाया जा रहा है मशीन की मदद से।

यह जो बिल्डिंग है सफेद रंग की है और यह बिल्डिंग के पास जो दो गाड़ियां खड़ी हुई है यह गाड़ियां जो है कि एक सफेद रंग की और एक काली और सफेद रंग की है।

यहाँ पर जो है एक बाइक भी पार्क की गई हुई है और बाजू में एक दुकान है दुकान का जो शटर है वह थोड़ा सा नीचे है पूरा बंद नहीं है शटर उस दुकान का --

सूरज निकल रहा है और दूसरे बाजु बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन चल रहा है आधी-अधूरी वह बिल्डिंग है और यहाँ कुछ लोग योगा कर रहे है।